और चेयर है कुर्सी है उधर बोर्ड जैसा लगा है व्हाइट कलर का--

घा लाइट लगा हुआ है बढ़िया नीचे घास है।

कूडजा जैसा पेहना हुआ है। बड़ा सा लाइट लगा हुआ है। सामने।

बहोत सारी गाड़ियां चल रही लोग बैठे हैं लोग जा रहे हैं।

और बहुत सारे खड्डे में बॉक्स में--

कोई एक्सरसाइज कर रहा है कोई सूर्य नमस्कार कर रहा है बहोत सारे मूर्ति बना हुआ है ऊपर--

और जिस पर रंग बिरंगे बुक जैसा फाइल जैसा रखा हुआ है।

यह हॉल है। इस जिस जहाँ से सैलून का दुकान जैसा दिख रहा है। जहाँ --

और एक दुकान है एक लोग चल रहे हैं।

ठंडी ठंडी पानी है हवा ठंडी चल रहा है।

जो गेट खुला है बड़ा सा हाॅल है लाइट है।

यह कॉलेज का हॉल जैसा दिख रहा है।

हरा भरा उधर मैदान दिख रहा है।

इधर पत्थरों का एक लोग भैया बैठा हुआ हैं।

खाने पीने का समान जैसा दिख रहा है।

यहां बढ़िया सा ल लाइट जैसा जल रहे हैं।

और घड़ी जैसा का खम चा बना हु --